सर्फ शैम्पू कोलगेट क्रीम और पॉन्ड्स बहुत सारी हम्म टोस्टर बिस्कुट बहुत सारी आइटम नजर आ रही हैं सर पे और मेज पे भी बहुत सारी आइटम रखे हुए नजर आ रही है।

यहाँ हमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है और यहां कुछ गाड़ियां खड़ी है जो शायद पेट्रोल भरने के लिए आयी हुई है।

यह एक आ छोटा सा शॉप नज़र आ रहा है जिसमे बहोत सारे बच्चो के खिलौने नज़र आ रहे है।

और यहाँ पर बहुत सारे बजाने उजाने के लिए बच्चो का मनोरंजन करने के लिए खेल के लिए बॉल वॉल बहोत प्लास्टिक की बहोत सारी खिलौने नज़र आ रहे हैं जो बच्चों की अपनी ओर बहोत ही आकर्षित करते हैं।

यह एक हाईवे पे पेट्रोल पंप बना हुआ है। पेट्रोल पंप पे बहुत सारे टायरों का ढेर बना नजर आ रहा है। दूर दो तीन ट्रक पेट्रोल पंप में पट्रोल भरने के लिए आए हुए नजर आ रहा है।

स्टोर के फर्श पे रेड व्हाइट का टाइल्स लगे हुआ है सामने रेड व्हाइट का शेल्फ भी लगाा हुआ है बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है।

मेन गेट लोहे का बना हुआ है अंदर पुल है अभी यहाँ पे तो अभी लोग दिख नही रहे हैं । यहाँ पे कुछ झंडे वडे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सड़क के सामने में एक बड़ी सी मंदिर दिख रही है। ये दो तीन दो तीन तल्ले का मंदिर है ।

यह ऊपर टेरेस की ओर दिख रहा है टेरेस बहुत पुराना नजर आ रहा है।

और सामने एक बड़ा सा डोरमेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

यह कोई बड़ी सी ऐ विद्यालय का बहुत अ अ बड़ा सा ईमारत दिख रहा है जो सरकारी सा लग रहा है की ये सरकारी स्कूल है।

बहुत बड़ी ऊंची- ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही है । ऊपर खुला बहोत ही खूबसूरत असमान भी दिख रहा है। सामने गार्डन है ग्रीन ग्रीन घास लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक सा ये पर्यटक वाली स्थल लग रही है।

और पीछे व्हाइट कलर की दिवाल नजर आ रही है। लाइट में माता का मदिर और भी खूबसूरत और बहुत सुंदर नजर आ रहा है।